ब्लैक कलर का है और गेट के बाहर एक बाइक खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे बेंच और डेस्क नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक दुकान का सीन दिखाई दे रहा है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और ब्राउन भी है एक खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक का बहोत सारा डिब्बा दिखाई दे रहा है।

स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है उजला कलर का।

और दो आदमी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं।